यहां सब तरह के कपड़े मिलते हैं बच्चों के बड़ों के--

यहां सब तरह के आदमी उठते हैं शादी पार्टी के और--

यह सकूल के बच्चे हैं यहां पी_टी हो रही है सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

ये है बहुत सुंदर दुकानें दिखाई दे रही है।

और बड़े बड़े घरें मंजिलें दिखाई दे रही हैं।

और बहोत बड़े केन कि चाय हो रही है।

यह बहुत सुंदर मॉल सा दिखाई दे रहा हैं इसमें बहुत सारा समान रखा हुआ हैं।

बहुत सुंदर घर दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी लड़की अ अ कम्पूटर मे काम कर रही हैं के और बहोत सारी कुर्सी भी बिछी हुई है।